कुछ बूढ़े आदमी खड़े हुए हैं।

साइड में एक बॉक्स के अन्दर एक फूल रखा हुआ है पीले रंग का कुत्ते के पीछे एक नीला डब्बा रखा हुआ है।

नीचे नीली टि शर्ट टंग रही है साइड में लाल टी शर्ट टंग रही है और ऊपर सफेद टी शर्ट टंग रही है।

इस से इ इधरली साइड में थोड़ी सी आसमानी सी ड्रेस संग रही है।

ये एक ए_सी लग रही है।

नीचे फरस पड़ा हुआ है।

इस फोटो में एक झोपड़ी दिख रही है।

इस फोटो में एक बोर्ड लग रहा है जिसके ऊपर जय माता दी लिखा हुआ है अग्रवाल शू स्टोर लिखा हुआ है ऊंचा गांव वाले लिखा हुआ है मोबाइल नंबर लिखा हुआ है रेड लिखा हुआ है।

और यहां पे टीन पड़ी हुई है।